यूनियन बँक ऑफ़ इंडिया में आप खाता खोल सकते हैं पैसा मतलब जो भी है जो सुविधाए है वो ले सकते हैं। यूनियन --

ये कस्तूरी पनीर कार्नर है। यहाँ पर आपको पनीर मिल सकता है।

सांस्कृतिक मतलब जो पुराना संजोया हुआ डांस होता है किसी भी देश का। ये भारतीय पोशाक है। पैजामा और ब्ला बड़ा वाला फ्रॉक पहन के रखा है इन्होंने। कोई अच्छा कथक नृत्य कर रहे होंगे।

ये छोटा मंदिर है जोकि गाँव में रहता है और नहीं तो शहरों में भी गली वगैरह में रहता है छोटा-सा मंदिर है। आगे फूल का पॉट रखा हुवा है। सब फूल इसमें लगाया गया है।

जच्चा-बच्चा यानि डिलीवरी वगैरा के समय पे दवा वगैरा का जो भी है क्योंकि यहाँ दिख रहा है एक लेडीज खड़ी है। तीन लोग बैठे हुए हैं इसमें एक लेडीज जो दवा दे रही है और दो जेंट्स लोग हैं। ये कुछ लिख रही हैं सामने दवा वगैरा भी रखा है। ये सब